यहाँ बहुत सारी सफेद रंग की कुर्सियाँ एक साथ रखी हुई हैं और कुछ कुर्सियाँ यहाँ पे अलग अलग भी रखी हुई हैं यह एक चर्च दिखाई देता है।

ए लिखा हुआ है उस बस के आगे एक मोटरसाइकिल भी जा रही है जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है।

और उसके यहाँ पे‌ वेलकम लिखा हुआ है एक सड़क भी यहाँ दिखाई दे रही है।